ये अंडे आकार के दिखाई दे रहे है और इनका रंग पर्पल लाल गुलाबी हरा--

इस स्टेशन के सामने बहोत सारी रिकशे खड़े हुए है कुछ पर सवारिया बैठी हुई है कुछ लोगो--

दो-तीन बोट्स चलती हुई दिखाई दे रही है आस-पास चारो ओर हरियाली दिख रही है और इस झील के बीच में एक--

यहाँ लकड़ी की छीलन के दो पैकेट बने हुए है टंगे हुए है जिनको रस्सी से बांधा गया है।

जिनमें खड़े हुए दिख रहै है इस पिंजरे पर एक न्यूज़पेपर बिछा हुआ है जिस पर उनके दा दाने पड़े हुए हैं।

चल रही है गाडियाँ खड़ी है और ये दुकानो में भी कुछ लोगो सामान खरीद रहे है।

यहाँ एक साफ -सुथरी सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पर दो बाइक्स गुजर रही है।